और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पूर्णिमा छ छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के सु--

जहां बच्चे और बड़े पढ़ने आते--